दिखाई दे रही है यहां पर बहुत सारे कमरे नजर आ रहे हैं।

लाल रंग का नजर आ रहा है यहां पर कुछ मनुष्य --

सुसज्जित की गई है यहां कुछ मनुष्य भी दिखाई दे रहे हैं।

उसके साथ ही यहां पानी पीने की व्यवस्था भी --

दुकान नज़र आ रही है जिसका नाम ओझा ट्रेडिंग कंपनी है।

जहाँ एक बिल्डिंग नजर आ रही हैं इस बिल्डिंग का नाम --

के चित्र नज़र आ रहा है कुछ महिलाएं अपना समान --

डॉक्टर की डिस्पेंसरी नजर आ रही है यहां पर कुर्सी --

और टेबल भी नजर आ रही है।

फूड पार्क के सामने कुछ गाड़ियां भी नजर आ रही है।

लगते हुए महसूस हो रहे हैं।

यह एक खाली मैदान नजर आ रहा है जहां पर कुछ गाड़ियां खड़ी हुई--

यह एक सब्जियों की दुकान नजर आ रही है जहां पर टमाटर गाजर --

स्कूल की फोटो नजर आ रही है जहां पर एक अध्यापक --